और एक टेबल भी देखने को मिल रही है कुछ शैंपू के पैकेट भी ------

और नीचे में टाइलसे लगी हुई है और सामने कुछ खिड़कियां देखने को मिल रही है।

सामने एक बरा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

जिसमें फिजिक्स वाला का बरा सा बोर्ड है और उसका सिंबल भी देखने को मिल रहा है।

सामने एक बरा पोखर देखने को मिल रहा है पोखर में एक बोट है बोट उजला कलर से है क्या है--